इसमे मुझे बर्गर लिखा दिख रहा हैं।

छोटे-छोटे शेर के दिख रहे हैं।

मुझे मैदान में बहोत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं।

मुझे इसमें एक गेम जोन दिख रहा है।

इसमें मुझे माता सरस्वती की फोटो लगी दिख रही हैं।

इसमें मुझे शादी का डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे छोटे छोटे पेड़ सजे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे छोटे छोटे पत्थर दिख रहें हैं।

इसमें मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहे है।

इसमें मुझे रूम में लाल रंग की टेबल दिख रही है।

इसमें मुझे सोलर पैनल दिख रहा है।